ये हमारी सरस्वती मां है जिसको हम विद्या वाहिनी भी कहते है कहते है हमे इससे विद्या मिलती है इसके बारे में जितना प्रशंसा करे उतना कम है।

यहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ खाना दाना मिलता है मिडडे से सब कुछ मिलता है अच्छी तरह से देखिये बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है मुझे उतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है चलिए बाय --

ए--एकदोतीनचार ये हो गए चार मंजिल---

वहां पे एक बाइक लगी हुई है एक आदमी है जो फोन पे बाते कर रहे है।

ये जो है वर्कर्स अच्छे से काम करते होंगे हमको जैसा लगता है ये मेरे खयाल मे रखता है ये कपड़ा का फैक्ट्री है उसके बाद पता नहीं कुछ हो रहा है जो भी हो रहा हो।